नमस्कार इंट्रोडक्शन टो जमोल एप्लिकेशन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं जमोल एप्लीकेशन विंडो और कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में संक्षिप्त में समझाउंगी
हम निम्न सीखेंगे मेन्यू बार टूल बारऔर जमोल पैनल
जमोल पैनल के आकर को कैसे रूपांतरित करें160 सामान्य ऑर्गैनिक अणुओं के मॉडल्स को बनाना
हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलकर अणु बनाना
हम यह भी सीखेंगे स्थिर कान्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज़ करना
और इमेज को mol फाइल की तरह सेव करना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री और बेसिक ऑर्गैनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ160 उबन्टु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 और जावा वर्जन 7 ध्यान दें
जमोल एप्लीकेशन को आसानी से रन करने के लिए आपके सिस्टम पर जावा संस्थापित होना चाहिए
जमोल एप्लीकेशन के बारे में
यह फ्री और ओपन सोर्स मॉलिक्यूलर व्यूअर है
केमिकल स्ट्रक्चर के 3 डायमेंशनल मॉडल्स देखने और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है
और प्रोटीन्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए भी उपयोग होते हैं
डाउनलोड और संस्थापन से सम्बंधित जानकारी उबन्टु ओएस के लिए उबन्टु सॉफ्टवेयर सेंटर उपयोग करके जमोल का संस्थापन किया जाता है
कृपया हमारी वेबसाइट wwwspoken tutorialorg पर लिनक्स सीरीज़ में इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करें
विंडोज मैक ओएस और एंड्रॉयड यंत्रों पर संस्थापन के लिए कृपया wwwjmolsourceforgenet पर जाएँ
और वेब पेज पर संस्थापित करने के लिए दिए निर्देशों का अनुसरण करें
मैंने पहले ही उबन्टु सॉफ्टवेयर सेंटर उपयोग करके अपने सिस्टम पर जमोल एप्लीकेशन संस्थापित कर लिया है
जमोल एप्लीकेशन खोलने के लिए दश होम पर क्लिक करें
सर्च बॉक्स में टाइप करें जमोल जमोल आइकन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
जमोल एप्लीकेशन विंडोे खोलने के लिए जमोल आइकन पर क्लिक करें जमोल एप्लीकेशन विंडो पर सबसे ऊपर मेन्यू बार है
मेन्यू बार के नीचे टूल बार है
यहाँ डिस्प्ले एरिया है जो जमोल पैनल की तरह निर्दिष्ट किया गया है
मेन्यू बार में भिन्न विकल्प हैं जैसे फाइल एडिट डिस्प्ले आदि
इनमे से प्रत्येक कई उप विकल्प भी रखते हैं
अन्य विकल्पों के आलावा टूल्स मेन्यू परमाणुओं के बीच दूरी नापने के लिए टूल्स रखता है
इन विकल्पों के बारे में हम आगामी ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
हेल्प मेन्यू जमोल एप्लीकेशन के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी रखता है
यह एक यूज़र गाइड भी रखता है जिसमे डॉक्यूमेंटेशन है
टूल बार बहुत सारे मेन्यू आइकन्स रखता है
मेन्यू आइकन्स कुछ फंक्शन्स को जल्दी से निष्पादित करता है जैसे ओपन सेव एक्सपोर्ट प्रिंट आदि
यहाँ दूरियां नापने परमाणुओं के सेट को सलेक्ट करने घूमाने आदि के लिए आइकन्स का सेट है
मॉडेलकिट आइकन आणविक मॉडल्स को एडिट करने और बनाने के लिए प्रयोग होता है
अपनी ज़रूरत के अनुसार जमोल पैनल को रीसाइज़ किया जा सकता है
कर्सर को विंडो के किसी कोने पर लाएं जब तक यह एरो इंडिकेटर में न बदल जाये
अब विंडो को डाइऐगनली ऊपर या नीचे खींचकर रीसाइज करें
मेन्यू बार में डिस्प्ले मेन्यू पैनल के साइज को बदलने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है
डिस्प्ले मेन्यू पर क्लिक करें और रिसाइज विकल्प सिलेक्ट करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ हम विड्थ और हाइट पिक्सेल्स में स्पष्ट कर सकते हैं
मुझे 800 बाइ 600 पिक्सेल्स साइज की विंडो की ज़रुरत है
अतः मैं टाइप करुँगी 800 स्पेस 600 और ओक बटन पर क्लिक करें
अब जमोल पैनल 800 बाइ 600 पिक्सेल्स में रीसाइज़ होता है
अब कुछ सरल ऑर्गेनिक अणुओं के मॉडल्स बनाते हैं
मॉडेलकिट हमको एनर्जी मिनिमाइज़ेशन के साथ मॉडल्स को रूपांतरित करने और बनाने की अनुमति देती है
टूल बार में मॉडेलकिट आइकन पर क्लिक करें
पैनल पर मिथेन का एक मॉडल प्रदर्शित होता है
जमोल पैनल के ऊपर बाएं कोने पर एक मेन्यू प्रदर्शित होता है
इस मेन्यू की विशेषताओं में निम्नलिखित सक्षमतायें हैं परमाणुओं को आसानी से जोड़ना मिटाना खींचना
फंक्शनल ग्रुप जोड़ना
बॉन्ड्स को मिटाना जोड़ना और घुमाना
हाइड्रोजन्स जोड़ना मिनिमाइज़ करना और फाइल्स सेव करना आदि
मेन्यू पर एक निश्चित विशेषता प्रयोग करने के लिए उपलब्ध चेकबॉक्स पर क्लिक करें
मॉडेलकिट फंक्शन एक हाइड्रोजन परमाणु को एक मिथाइल ग्रुप से बदलने की अनुमति देता है
जिस हाइड्रोजन परमाणु को आप बदलना चाहते हैं उस पर कर्सर लाएं
उस हाइड्रोजन परमाणु पर एक रेड रिंग प्रदर्शित होती है
परमाणु पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा गया है
मिथेन अणु अब इथेन में बदल गया है
पहले की तरह ही स्टेप दोहराएं
प्रोपेन का मॉडल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें
इस अणु पर एनर्जी मिनिमाइज़ेशन हमें अधिकतम स्थिर कान्फॉर्मेशन देगी
एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करने के लिए मॉडेल किट मेन्यू में विकल्पों पर नीचे जाएँ
मिनिमाइज विकल्प पर क्लिक करें
अब हमारे पास प्रोपेन अणु का अधिकतम स्थिर कान्फॉर्मेशन का मॉडल है
इस स्ट्रक्चर को mol फाइल की तरह सेव करने के लिए मॉडेल किट मेन्यू खोलें
मेन्यू पर नीचे जाएँ और सेव फाइल विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन पर सेव डायलॉग बॉक्स दिखता है
उस फोल्डर पर क्लिक करें जहाँ आपको अपनी फाइल सेव करनी है
मैं अपनी फाइल सेव करने के लिए डेस्कटॉप चुन रही हूँ
अतः डेस्कटॉप सिलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें
फाइल नामे पर जाएँ और टेक्स्ट बॉक्स में प्रोपेन टाइप करें
फाइल्स ओएफ टाइप पर क्लिक करें और मोल विकल्प सिलेक्ट करें
अब डायलॉग बॉक्स के नीचे दायीं तरफ सेव बटन पर क्लिक करें
डेस्कटॉप पर प्रोपेन का 3डी मॉडल mol फाइल की तरह सेव होगा
जमोल को एग्ज़िट करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और प्रोग्राम को एग्ज़िट करने के लिए एक्सिट विकल्प सिलेक्ट करें
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा जमोल एप्लीकेशन विंडो के बारे में
जमोल पैनल को रीसाइज़ करना
सरल ऑर्गेनिक अणुओं जैसे मिथेन इथेन और प्रोपेन के 3डी मॉडल्स बनाने के लिए टूल बार में मॉडेलकिट फंक्शन प्रयोग करना
हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलकर अणु बनाना
स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करना
और इमेज को mol फाइल की तरह सेव करना
जमोल मॉडेलकिट फंक्शन प्रयोग करके निम्न अणुओं के मॉडल्स बनायें 2 4 डाइमिथाइल पेंटाने और 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज़ करें
mol फाइल की तरह इमेज सेव करें
टूल बार में रोटेट मॉलिक्यूल प्रयोग करके मॉडल को घुमाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद